जो की झंडे यहां पे लगे हुए हैं और यह यहां पे काफी एरिया में मैदान पड़ा हुआ है खेत है अगल-बगल छोट-मोटे घांस है यहां पे।